पिकचर में हम देख सकते है की यहां पे बड़े बड़े पत्थर और पहाड़ मोजूद है जहां पर ये आदमी घुमने के लिए आया दिखाई देता है जो फोटो ले रहा है इस जगह की और हम देख सकते है इस आदमी का जो--

इस चित्र में हमें ये मालूम पड़ता है की ये एक सैलून या पार्लर है जहा पर--

मनुष्य अपने बालो को कटवाने के लिए और जो बाल मुह पे होते है उसे सही करने के लिए आता है शेप करवाने के लिए।

ओर ऐसा मालूम पड़ता है की ये एक ग्रुप फोटो ले रहे है अपने परिवार का और इसके आसपास हमें कई सारे पेड़ पौधे दिख रहे है।

यहा इन्हे अक्सर सिखाने की पुस्तक हो बड़ो की पुस्तक हो सरकारी परीक्षा की पुस्तके जो हम तैयारी कर सकते है और हमें यहां पे हमे केरेम बोर्ड खेलने के लिए खिलोना वगैरा मिल जा--

चित्र में हम देख सकते है की यहां पे बहुत बड़ा पार्क मोजूद है जहां पर कई सारे बच्चे खेलने कूदने के लिए आते है और यहां पर लोग अपने बच्चो को धूमाने के लिए ले आते है।

इस चित्र में हम देख सकते है की यहां अ-पर कोई सभा जमी हुई है जहां पर कई सारे अ लोग सुनने के लिए आए हुए देख सकते है यहां पर एक मूर्ति बनायी गयी है या जिसका निर्माण हुआ है।